सामने एक खिड़की भी दिख रही है।

और यहां बहोत सारी मशीनें रखीं हैं।

ये एक रोड है जिसमें बहुत सारे लोग घूम रहे हैं।

जिसका फर्श काले और लाल कलर कि टाइल लगी है रबर कि--

जिसमें कुछ मशीनें पीले कलर की है कुछ सफेद।

जिसमें बहोत सारे हरे हरे पेड़ निकले हुए हैं।

बहोत सारे हरे हरे पेड़ हैं।

सामने उसके एक गद्दा लगा है जिसका कलर सफेद है।

और कुछ लोग खाना खा रहे हैं।

जो जो डांस स्पे स्टेप दिखा रही है।

और सामने औरत के पीछे एक दो काउंटर रखे हुए हैं।

और इसकी छत पे लाल कलर की बाउंड्री बनी है।

एक छोटी सी दुकान है भेलपुरी की।

सामने दो काउंटर रखे हैं शीशे के।

जिस पे कुछ डिजाइने भी नजर आ रही है।

और लोहे की छड़े बहोत सारी खड़ी हुई हैं।

जिसमें बहोत एक दुकान बाहर लगी है छोटी सी जिस पे मसाले गुटखा मिल रहा है।

इसमें बहोत सारी कुर्सियां और एक बेंच लगी है।

इसके ऊपर कुछ किताबें रखी हैं।

साइडों में बहुत सारी दुकानें हैं और बहुत सारे बड़े बड़े घर।

बहुत सारे लोग नीचे खड़े हैं।

जिसमें बहुत सारी कुर्सियाँ और बैंचें रखी हैं।

साइड में ब्लैक कलर की कुर्सी और बिंच लगी है।

एक एप्पल का बॉक्स रखा है।

जिसने काले कलर की टी-शर्ट और लाल कलर की फ्रॉक पहनी हुई है।

सामने लोहे की दीवारें बनी हैं।